बड़े से खम्बे भी है।

बहुत सारे एल_इ_डी लाइट भी चालू है यहां बहुत सारे लोग भी हैं और बजा रहे हैं राइट साइड में ये घड़ी भी है।

ये एक वाशिंग मशीन की दुकान है यहापर बोहोत सारे फ्रीज़ भी है बकेट भी है।

मशीन है चॉकलेटी वाइट और आजू बाजू बड़े बड़े बिल्डिगा भी दिख रहे है आजू बाजू झाड़ भी दिख रहे है।

बड़े बड़े फोटो में मच्छी को रखा जाता है समुंदर नदियों से पकड़ के लाके यहाँ पे बेचा जाता है।

ये एक अअअअ आआआ बेल्ड की शॉप है यहा पे बहुत सारी अंगुठियां भी रखी हुई है और यहा पे बहुत सारे पलीयाओ में--

बोहत साले बेल्ट्स को लटकाया गया है लिंक्स बनाया है कि यहा बे बायत लेड चोकलेटी ब्लावन बोहत शाले बेल्ट्स लगाये गये--

और उपल ब्लू कलर का आसमान भी दिख लाहा है।

टेबल टेबल भी है या पे सतरंजी बिछाई गई है यहां पे चक्का भी रखा गया है यहां पलंग्या के ऊपर चाल कैमरे लगे--

ये एक आर अस एंटर्प्राइजेस की बिल्डिंग दिख लही है औल यहा पे से दो और ।--

आजू बाजू बड़े बड़े बिल्डिंग भी है सोलर सिस्टम भी लगाया गया यहां पे बहोत सारे झोले भी है और लटकने के--

यहाँ बेठनेकेलिए बेंचा भी है डस्टबिन भी रखा हुआ है यहाँ पर लोग बैठे हुए है आजुबाजु बड़े बड़े पेड़ भी दिख रहे है।

और यहां पे बहुत सारे कपड़े रखे हुए है बांध के और यहां पे एक के ऊपर एक जमा कर रखे गए।

और यहाँ पर इसमें खिडकिया भी बनाये गए है और यहाँ पर बहुत सारे रखे हुए है।

ये एक अ कपड्यांक कि दुकान है यहा पे बोहत सारे शेल्फ्स में--

ये एक क्रिती यगा यहा पे पार्क मे एक कैंप लगाया गया है अ ओओ और यहा पे बहोत शारे।

यह एक अ आझौल स्किन केयर हॉस्पिटल है यहां पे सिविर डॉक्टल है।

यहापर सामने टेबल पे बहुतसारे बुक्स रखे हुए है और बैठने के लिए काले कलर की खुर्ची भी है।

यहा पे बोहत शारे मोबाइल्स है और पछे ग्लीन कलर का स्किन कलर वहा लगाया वॉल को लेफ्ट साइड में।

सामने एक घर जैसा बनाया गया है और यहाँ आजुबाजु बड़े बड़े दिख रहे है आजुबाजु --

यहां पे एक बड़ी सी बिल्डिंग है और यहां पे दोनों साइड अह स्टेप भी बनाए गए हैं यहां पे मूर्ति भी एक आदमी--

खड़ा हुआ है ऊपर लायटिंग भी है लगाए गए और सामने छोटे बड़े झाड़ भी लगाए गए है।

और वायल बहुत सारी टू व्हीलर्स भी हैं लव भी हैं औरत भी हैं अंदर जारे हैं लहसन भी --